लेकिन किसी तरह का शोर शराबा या किसी व्यक्ति की आवा जाहि नहीं नजर आ रही है यह बहोत अच्छा है।

इस बिल्डिंग में हमें एस_एम_एस मेडिकल कॉलेज नजर आ रहा है।

लाइटिंग बहोत अच्छी है काफी लोग उसका आनंद ले रहे हैं सजावट बहोत अच्छी है।

रेलिंग लगी हुई है यात्रियों की सुविधा है।